ये बहुत दूर में हैं यहाँ पर लग रहा हैं कोई मशीनरी स्टोर भी बैठाया गया वहाँ पर एक आदमी खड़ा हैं जो पीला --

कुछ दिखाई दे रहा हैं पता नहीं क्या हैं इसमें ताला भी लॉक हैं ऊपर से शीशा भी लगा हुआ है।

से निरिक्षण किया गया हैं।

और जैसे लग रहा है की यहाँ पर बाराती आने वाला है बहुत सारे लाइट भी लगी हुई है इसमें दिखाई दे रहा है --